किसी व्यक्ति के ठहरने का यह एक स्थान दिखाई दे रहा है।

लोगों के बैठने की उचित व्यवस्था की गई है।

ऐसा लिखा हुआ है एक बोर्ड लगा हुआ है।

काफी सारे सामान रखा हुआ है बॉडी बनाने वाला--

रेलवे स्टेशन का यह एक दृश्य दिखाई दे रहा है इसमें जो रेलवे लाइन बना हुआ है बिल्कुल--

इसमें खिलाड़ी अपना प्रैक्टिस करते रहते हैं।

और यहां पर पूजा पाठ का कार्यक्रम का एरिया एरिया दिखाई दे रहा है।

नीचे में किराना दुकान भी दिखाई दे रहा है।

काफी सारे नर्सरी में फूलों का छोटा-छोटा पौधा तैयार किया गया है इसमें बीच में एक कुर्सी लगाकर नर्सरी का मालिक भी बैठा हुआ है।

बहुत सारे लोग भोजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

पुस्तकालय के एरिया दिखाई दे रहा है।

और एक सिर पर पगड़ी लगाए हुए सिख भाई हाथों में चत्तर लिए हुए हैं।

देखने से काफी डरावना और काफी गया है पानी दिखाई दे रहा है।

जमीन की खुदाई करता हुआ एक जेसीबी मशीन --

और उसका मुंह सिर्फ दिखाई दे रहा है।